और उस मकान के शोरुम के बाहर स्कूटी और टमटम ख-खरीदी जाती है और शोरूम के गेट के अंदर कुछ --

किताब की दुकान के बाह काफी संख्या में व्यक्ति और महिलाएं बच्चे खड़े हुए हैं।

और उसी के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान और फोटो स्टूडियो की दुकान भी है और इलेक्ट्रॉनिक की और पुस्तक की दुकान पर लाइटे जल रही है और पंखे करीब उनके सा --